यह दृश एक चर्च का है चर्च मै सामने एक व्यक्ति खडा है उसके पीचे चर्च का निशाण है वेह व्यक्ति--

एक महिला ने डिफ़्रेंट यानि की ग्रे रंग की साड़ी डाली है बाकी सभी सेम कलर डाले हुए है।

इस दृश्य में साईकिल मोटर सायकल खड़ी हुई नजर आ रही है सामने कुछ--